और झूले के पीछे और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और एक ऊंचा सा पहाड़ जैसा भी दिखाई दे रहा है।

इसमें आपको सैमसंग के मोबाइल और ओप्पो मोबाइल --

और उसके बगल में दो तीन दुकाने और भी है।

जैसा कि हम देख रहे हैं चित्र में एक स्कूल या किसी इमारत की फोटो हमको देखने को मिल रही--

यह जो मेरे सामने तस्वीर है इसमें हम देख रहे हैं।

दोनों की तरह पानी ही पानी अब तक पानी के दोनों तरफ --

और दो कल कार के बगल में दो गाड़िया खड़ी है।

देख सकते हैं जो कि बहोत ही सुंदर एक बहोत ही--

पानी के आ आ ऊपर आसमान की परछाई हम पानी पी देख रहे--

जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं यह किसी--

यह तस्वीर एक पार्क की है पार्क में झुला है झूले के साथ में मिट्टी वाली सड़क--

अ चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं बच्चों के झूलने--

बहोत ही अच्छा लगता है बच्चे को और झूले का आनन्द लेते है।

ये वो देखने की कोशिश कर रहा है कि ऊपर से चित्र लिए जाने पर--

सामने हम देख सकते है टेबल है कुर्सियाँ है।

बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कुर्सी पे जर--

और ईंटों को बराबर से है ये सब घर बनाने के सामान में--

ये बेल्ट उनकी प्रतियोगिता के लेवल को दर्शाने के लिए बेल्ट दी जाती है।

इस चित्र में दिखाया गया है की कुछ लड़कियां अपना योगा का और अभ्यास कर रही--

आदमी खड़ा है और उसके सामने से एक रिक्शा जा रहा--

ओर मैदान के बगल में पेड़ दिखाये जा रहे है और मैदान के--

ठीक कर दिया जाता है ऐसे नया पेंट वगैरह लगाकर।

इस चित्र में हम देख सकते है एक विशाल झरना है और झरने के बगल में पहाड़ है पहाडो के बीचो बिच से--

पड़े हैं जो पर्यटक का हैं जो दूर से--

इस चित्र में हम देख सकते है ये किसी बांध की तस्वीर है जो--

इ सुंदर दिख रहा है इस चर्च को बनाने का आर्किटेक्ट --

लॉकर बना हुआ है जो कि काच उसके ऊपर पानी--

लोगो से काम करा रहा है लोगो को बता रहा है।

ये देख सकते हैं की कुर्सियां और मेजों पे लोग बैठे हुए--

सड़क पे लोग अह जा रहे हैं और साथ में हम देख सकते--

यहां से वहां अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।